पुल लोहे का बना हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारी--

यहाँ पर बहोत सारी लाइटे भी दिखाई दे रही हैं।